उस साइड में गमले भी रखे हुए हैं और वह बच्चा कुछ लगा के चिपका रहा है और आधे बच्चे मन लगा कर के बना रहे हैं।

स्कूल का चित्र दिखाई दे रहा है ये बच्चे अपना पेपर देख रहे हैं चार्ट पेपर ।

और मैडम पेपर इनका चेक कर रहे हैं और बच्चे शैतानी भी कर रहे हैं और बच्चे मौज भी कर रहे हैं।

और मन लगा के मेहनत भी कर रहे हैं। ये लड़की कैंची लाए हुए और कुछ काट रही है और ये बच्चे बोहोत मन लगा के मेहनत कर रहे हैं।

ये बैंक का चित्र दिखाई दे रहा है और कई लोग बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं।

भगवान गॉड का जज दिखाई दे रहा है और कई सारे प्रार्थना कर रहे हैं।

ये वाल कटिंग का चित्र दिखाई दे रहा है एक लड़का कटिंग करा रहा --